एक कुर्सी पड़ी हुई दिख रही है जो काले रंग की पड़ी है और बहुत से बच्चों व व्यक्ति दिख रहे हैं।

दो औरतें जाती हुई दिख रही हैं तथा एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है जो पीले रंग की शर्ट पहने हुए है।

एक नीले रंग का स्टूल पड़ा हुआ है पास में एक टेबल पड़ी हुई दिख रही है।

पहाड़ों पर बहुत सी हरी भरी घास दिख रही है वह कुछ पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

रेस्टोरेंट को बहुत ही बेहतरीन सुनाया गया है और चारों तरफ लाइटें ही लाइटें लगी हुई दिख रही हैं।

बहुत से पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं और एक बेरीगेट रखा है जिसका कलर पीला है।

बैलून का कलर सफेद गुलाबी व हरा दिख रहा है।

मकान के पास में कुछ खास दिख रही है।

नदी के पास में मंदिर बना हुआ दिख रहा है और कुछ व्यक्ति देख रहे हैं।

कॉलेज को सफेद रंग से पेंट किया गया है और टाइल्स लगी हुई दिख रही हैं।

स्विमिंग पूल के चारों तरफ हरी भरी घास दिख रही है व एक सफेद रंग का टैंक रखा हुआ दिख रहा है।

गमले रखे हुए दिख रहे हैं तथा टाइल्स रखे हुए दिख रहे हैं।

एक काले रंग की पन्नी पड़ी हुई दिख रही है।

एक टेबल पर देवी देवताओं के पोस्टर रखे हुए देख रहे हैं।